और एक हमे एक पुलिया दिखाई दे रहा है जिसके नीचे से पानी बह रहा है।

तीन से बीस यहाँ पर बड़े-बड़े नारियल के पेड़ लगाएँ हुए हैं।

इस चित्र में हमें एक गेट दिखाई दे रही है बड़े से पेड़ दिखाई दे रहे है।

जो गेट है वो ऑरेंज और वाइट कलर में की हुई है बड़ा सा रास्ता बना हुआ है।

खेत हैं बोहोत बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है हरे कलर के----

और वह क्रीम कलर से पेंट की हुई हैं बड़े-बड़े पेड़ है वहाँ पैर--

दो बोट दिखाई दे रही है वाइट और ब्लू कलर का और एक ब्लैक कलर का --